ये एक बड़ा सा रोड है। रोड के सामने एक दुकान है। दुकान के गेट जो है वो बंद है काले रंग का दुकान है उसके पीछे एक और बड़ा बिल्डिंग है।

ये एक खाली सा फ्लोर दिख रहा है। बहुत सारी लाइट्स जली हुई हैं। पीछे अ- एक लाल रंग का वार्डरोब या एक शोकेश है।

सामने बड़ा सा एक बिल्डिंग है सफेद रंग का तीन माले का बिल्डिंग है एक पेड़ है पेड़ के बगल में एक छोटा सा बिल्डिंग बन रहा है बहुत सारा बा --